ऊपर ये एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमें ए_सी लगा हुआ है और पेड़ है।

इसे डाल रहा है और सामने एक गेट लगा है।

बाल्टी रखी है मशीन लगा है घड़ी लगी है कैमरा है।

कुत्ते का ऑपरेशन हो रहा है कुत्ते के पूछ पे नीला कलर लगा है।

दुकान है कैंपस लिखा है।

मिलाप शॉप कंपनी लिखा हुआ है।

फोटो के अंदर एक खेत की फोटो दिखाई गई है पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हैं बड़े बड़े।

इसने लीड लगाया है और का नीले कलर का शर्ट पहना है।

पानी टांकी लगा है उसकी पिलर दिख रहीं हैं।

एक आदमी पानी में चल रहा है एक कार जा रही है।

इसका कलर पीला है और एक आदमी बस में चढ़ा हुआ है।

से पोस्ट डिपाजिट का और एक लाल कलर का है और काले कलर का है।

लड़की खड़ी है और बहुत सारे चांद तारे के बैलून लगे हैं।

सारी लाइट लगी है। अनेक डिजाइन है इसमें। लोहे की डिजाइन है।

कपड़े की दुकान है इसमें बहुत सारी लाइटें लगी हैं।

पीछे में भी कुछ मशीन रखी है।

एक आदमी इधर खड़ा है स्कूटी वहां पे भी है।

गाड़ी खड़ी है गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है।

आदमी खड़ा है और एक दुकान है।

नीला कलर का शर्ट पहना है।

यह एक हॉस्पिटल है रीजेंस हेल्थ लिखा हुआ है दो काले ड्रम ऊपर रखे हुए हैं।

लिखा है और इसका पट्टी भूरे कलर का है।

मछली मंडी है में मछलियां बहुत सारी हैं।

और एक बड़ा पेड़ लगा है और छोटे छोटे डिजाइन वाले पेड़ लगे हैं।

यहां पर बहुत सारे आदमी खड़े हैं और यहां पर ये ए ए कलर वाले ईंटें लगे हैं किनारे किनारे।

मिट्टी का एरिया बना हुआ है एक टेंट लगा है।

एक आदमी खड़ा है नीले कलर की पैंट पहने।

स्वेटर में है लाल कलर का।

सामने दूल्हा बैठने का जगह है और वहां पे एक चेयर पड़ी है।

और एक साइड में आठ नौ बसे खड़ी है।